एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। कुर्सियॉँ रेड कलर की हैं।

इस तस्वीर में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

सीडियों के आस-पास लोहे की रेलिंग --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसपे साड़ियाँ टंगी हुई हैं और वहाँ पर मीरा साडी सेंटर लिखा हुआ है।

फलो में अनानास कच्चे केले हैं तरबूज --

उ नीचे वाले हिस्से में सजावट की हुई है मालाओं से --

एक बच्चे को रखे हुए दिख रही है।

पेड़ भी दिख रहे हैं। पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर में जाने के लिए बहोत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई दिख रही हैं।